एक दुकान दिख रही है यहाँ पर दो जेंट्स खड़े हुए है वहां पर डिजाइन वाले बर्तन रखे हुए है।

नदी दिख रही वहाँ पर जेंट्स है दिख रहे है दो तीन उनमे मछली रखी हुई है बड़ी बड़ी--

गेट दिख रहा है और एक जेंट्स बैठा हुआ है कुर्सी --

जो लकड़ी पकड़ रही है लड़की लड़का बैठा हुआ है लड़की ठाड़े हुई है।